जो एक डॉगी का उपचार कर रहे है यह बहोत ही अच्छा हॉस्पिटल है यहां पर सभी औजार --

यह एक खेत का फोटो है जिसमें एक व्यक्ति खड़ा हुआ फोटो ले रहा है और वहां --

चारों ओर हरियाली भी है बहुत ही बड़े बड़े पेड़ पौधे भी है उस व्यक्ति के पीछे बहुत ही अच्छा फोटो है यह एक --

यह फोटो एक बहुत ही अच्छे तालाब का है।

यह एक रेलवे स्टेशन का फोटो है रेलवे स्टेशन पर बहुत सी लाइटें जल रही है।

घर भी है और उसके अंदर भी लाइटें जल रही है पेड़ पौधे भी लगे हुए है यहां पर --

यह एक मकान है जिसके ऊपर काम चल रहा है यहां पर आधा काम हो गया है।

ठंडे पानी का भी वॉटर कूलर यहां पर है यह बहुत ही अच्छा--